मुझे इस तस्वीर में एक चर्च दिखाई दे रही है चर्च का ऊपर मुझे क्रॉस दिखाई दे रही है।

मुझ इस तस्वीर में एक हॉल दिखाई दे रही है अंदर मुझे एक रिसेप्शन भी दिखाई दे रही है जिसमें तीन इंसान हैं।

इधर घर का वरांडा दिखाई दे रहा है।

मुझे इधर काफी इंसान दिखाई दे रही है बाहर मुझे बरे बरे दो टावर भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर सीढ़ी भी दिखाई दे रही है फ्लावर पॉट दिखाई दे रही है।

मुझे इधर नीम के पेड़ भी दिखाई दे रही है बाहर मुझे काफी सारे कपड़े भी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे वरांडा दिखाई दे रही है जिसमें काफी सारे फ्लावर पॉट दिखाई दे रही है।

काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रही है छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रही है।